इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा हैं।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

तस्वीर में मुझे कुछ बस दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक गेट दिखाई दे रहा हैं।